जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई देरी है जो सफ़ेद रंग की है तथा इस पर ऑरेंज रंग की एक पट्टी बनी है जिसपर --

काला ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष खड़े हैं महिला ने पीले रंग की साड़ी --

यहाँ आस-पास चारों और पाइप्स लगे हुए हैं जो भूरे और हरे रंग के हैं पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ो का रंग हरा-भरा है।

जैसा की में देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जिसमें बने है ट्री और बुक शॉप लिखा हुआ है।

एक पानी का भरा हुआ तालाब दिखाई दे रहा है जिसमे पानी भरा हुआ है ये हरे रंग का है सामने --

जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ प आस पास हरियाली दिखाई सबसे छोटी छोटी पत्तियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर एक पक्षी है।

जैसा की मै देख पारी हु मुझे यहाँ पर एक दीवार दिखाई देरी है दीवार पर कुछ मूर्तियाँ --

ये तस्वीरों के नीचे यहाँ पे छोट छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है जो की नत्थ की मुद्रा में है।

जैसा की मै यहाँ देख प् रही हुं मुझे यहाँ पर कुछ रिक्शे दिखाई दे रहे हैं रिक्शो का रंग पीला और काला यहाँ पर तिरंगा झंडा लगा जिसमें केसरिया हा।

जैसा की मैं देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है इमारत का रंग सफ़ेद है तथा उसमे एक नीले रंग का शीशेदार कांच लगा हुआ है जमीन का रंग भूरा और काला है।

आसमानी और हरा है यहाँ पर छज्जा दिखाई दे रहा है जो की काले और भूरे रंग का --